इस इमेज को देख के लग रहा है जैसे कि ये एक जिम है जहां पे एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है।